मगर ये एक फोर सीटर सॉरी सिक्स सीटर गाड़ी है जो की बहुत अच्छा गाड़ी है।

और वो ऊपर से शायद अ गाड़ी इस पार से उस पार जाता है।

इस वेन मे से दोनों चक्का निकला हुआ है शायद । इसका इंजन या फिर पंचर ठीक हो रहा होगा इस गाड़ी का।